देखिए एक किराना शॉप है यहां पे स्प्राइट फ्रूटी मैंगो जूस --

ये रात का मौसम है यहां पे प्रोग्राम हो रहा है कृष्ण लीला--

नारियल बहुत सारे यहां पे लाइट लगा है और देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहे है।

देख सकते हैं ये दुकान अंबे वस्लय एवं सिंघार सेंटर है जिसमें--

कितना खूबसूरत इसको सजाया गया है ऊपर एक फैन भी लगाया गया है।

ये एक मॉल का सीन है यहाँ पे एक लेडिस को कपड़ा पेहना कर खड़ा किया गया है।

यहां पे बहुत सारे बचे पढ़ने आते हैं।

आप लोग भी यही जिम कीजिए और देखिए इनका कैसा इनका

देखने में बहुत मस्त दिखाई दे रहे हैं तीन व्यक्ति इसमें कम कर रहे हैं।

देखिए यहां पे एक फूल का बगीचा है इसमें बहुत सारे रंग बिरंगे फूल भी लगाए हैं।

अवर शुअर एंड इनर्जी एलटीडी कंपनी है जिसकी नीचे एस_बी_आई स्टेट बैंक का।

ये अगल अगल-बगल में बहुत सारे घर हैं यहाँ पे बहुत सारे आदमी आते हैं किरकेट खेलने के लिए।

वेलकम टू यहां पे बहुत सारे--